ये एक जिमर है जिम मशीन है अ जिम है जि उसमें बहोत सारा जिम मशीन है।

ये एक ऑफिस है सिलेंडर का बाहर बहोत आदमी सिलेंडर लेने के लिए खड़े हैं।

औड़ एक बाहर उसके बगल में एक बड़ा सा--

सड़क के बगल में बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ हैं और पत्थर के ऊपर गाज ब्रिज सब हो रहा हैं और बहोत सारा जंगल हैं और उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

डॉक्टर सब है और डॉक्टर लोग मास्क लगाए हुए हरा कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

लाइटें जल रही है और कुछ अदमी नीचे खड़े है बेड लगा हुआ है।

ये एक दुकान है सब्जी का और वो दुकान में टमाटर है।

और व्हाइट कलर का लाइब्रेरी है नीचे में ऑरेंज कलर का और एक बना हुआ है सब का सीट ।

कुछ आदमी अंदर बाहर खड़े हैं कुछ आदमी अंदर हैं कुछ आदमी खड़े होके कुछ दे रहे हैं।